एक कमान दिखाइ दे रही है एक बिजली का खंबा दिखाई दे रहा है।

टेबल पर ग्लास वगैरह सजा के रखा है।

एक आदमी नदी के किनारे बैठा है और उसकी मोटर साइकिल भी दिखाई दे रही है।

स्टेज पे दो लड़के खड़े है एक नीचे खड़ा है एक दो बैठे है।

यह चित्र किसी शादी समारोह का लगता है इसमें तीन औरतें और एक पुरुष है।

इस चित्र में कुछ लड़कियां दिखाई दे रही है और एक औरत भी दिखाई दे रही है यह लड़कियां कोई चित्र बनाने की कोशिश कर रही है।

और कागज से कुछ बना रही है।